यहां पे फिमेल जनरल वॉर्ड ऐसा बोर्ड मारा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ औरतें और कुछ मर्द यहां पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।